यह मारुति सुजुकू का शोरूम लग रहा है। यहाँ पर टू व्हीलर्स खड़ी है।

हरित में बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं।

हां ये किसी मन्दिर का ही है प्रवेश द्वार है क्योंकि यहां पे टेंपल लिखा हुआ है।

ये मॉल की अंदर की तस्वीर है जिसमें अच्छी व्यवस्था की गई है। पंखे दिख रहे हैं लोग एक भी नहीं दिख रहे हैं।

यह एक विद्यालय की महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की प्रॉपर्टी दिख रही है।

यह एक दीवाल को की हुई पेंटिंग दिख रही है जिसमें एक पैर दीवाल को तोड़ता हुआ बाहर नज़र आ रहा है ये असली नही है ऐसा --

यह एक मंदिर है। और इस मंदिर के आगे झंडा गड़ा हुआ है कुछ व्यक्ति मन्दिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।

कुछ बच्चे भी दिख रहे है। इम्म जो धरोवर को देखने आए है। लगता --

यह एक किसी बगीचे का फोटो लग रहा है क्योंकि यहाँ आसपास खाफी पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है और हरियाली भी है चलने के लिए फुटपाथ जैसा बना हुआ है।

यह एक फिसलन पट्टी इसमें काफी दिख रहा है और ये एक वाटरपार्क की तरह काम कर रहा है। वाटरपार्क में एक आदमी दिख रहा है और फिसलन पट्टियाँ भी काफी बड़ी -बड़ी है। इसमे --